यहां पर एक गौ माता भी है और हरे भरे घास भी है।

बॉल्स से खेल रहे हैं और एक घड़ी देखने को मिल रही हैं।

सामने बहोत बरा खेत जैसा दिख रहा है यहां पे कुछ पानी भी देखने को मिल रहा है।

यहां एक थाली देखने को मिल लहा है जिसमें दो कप है उसमें कॉफी है।

सामने एक कमरा है जहां पेए अ ऊपर में बहोत सारे चमचमाते लाइट है और सोफा लगा हुआ है।

सामने एक म्यूजिक स्टूडियो जैसा दिख रहा है जिसमें दो आदमी हैं।

और एक लड़का भी है और एक बरा सा पेड़ भी है एकदम हरा भरा--

सामने बहुत बड़ा मैदान है और यहां पे हरे भरे घास भी नजर आ रहे हैं।

अ सामने एक ग्रिल टाइप का घेरा भी दिख रहा है।

सामने बौद्ध भगवान का मूर अ स्मृति दिखाई दे रहा है जो कि पत्थरों के बीच बनाई गई है।

यह किसी बुक स्टेशनरी शॉप है और ये यहां पर कुछ बच्चे और एक महिलाएं है।

कुछ पे अं पेड़ भी नज़र आ रही है और एक रोड भी है।

और कुछ चेयर एक लैपटॉप भी देखने को मिल रहा है और लैपटॉप पे दो बोतल भी हैं।

सामने एक रोड है और यहां पर कुछ--

सामने एक रोड देखने को मिल रही है जिसके दोनों साइड बड़े बड़े बिल्डिंग है और एक साइड मंदिर देखने को मिल रहा है।

सामने एक घर देख देखने को मिल रहा है और यहां बहोत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहा है।

सामने एक मोबाइल दुकान दिख रहा है यहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस भी देखने को मिल रही है एक लैपटॉप भी--